आसमान दिखाई दे रहा है सूरज बिल्कुल आँखों के सामने दिखाई दे रहा है नीचे डूबता हुआ सूरज है या उगता हुआ सूरज हैं।

इस तस्वीर में एक खेल का मैदान दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है लड़के इधर उधर चलते हुए और --

इस तस्वीर मे कुछ दो पहिये वाहन खड़े हुए दिखाई दे रहे है और कुछ बोर्ड लगे हुआ दिखाई दे रहे है ऊपर की तरफ एक कच्चा मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है एक मुर्गी दिखाई दे रही है और हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में एक रेलवे प्लेटफार्म दिखाई दे रहा हैं पानी का पियावु दिखाई दे रहा हैं हरी बाल्टी दिखाई दे रही हैं और बेंचो के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हे ऊपर की तरफ से लाइटे जल रही हे।

इस तस्वीर में एक सफ़ेद दिवार में एक साइकिल बनी हुई दिखाई दे रही है उसके पहियों में लाल लाइट जलती दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है और एक पहाड़ियां दिखाई दे रही है उसमे एक सड़क जाती हुई दिखाई दे रही है और एक बहोत बड़ा समुन्द्र का किनारा दिखाई दे रहा है।

वो पीले रंग का ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ खिड़कियां भी लगी हुई है।

इस तस्वीर मैं रेलवे प्लेटफार्म दिखाई दे रहा हैं सीढ़ियां दिखाई दे रही है रेल की पटरी दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है और हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में कुछ लोग दिखाई दे रहे है और एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन दिखाई दे रहा है ये या कुछ हो रहा है वह उसके ऊपर कुछ गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहा हैं।

और एक नारंगी पट्टी में सफेद रंग पे अंग्रेजी में इंडियन आयल लिखा हुआ दिखा दे रहा है और सफ़ेद शटर और बहुत सारे गमले और पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।